और इसमे कपड़ा के अलमीरा भी रखा है।

पीछे में बहुत बड़ा पहाड़ भी दिखाई दिया है।

रूम मे ए_सी भी लगाया हुआ है।

का नाम लिखकर नीचे में चिपकाया है।

ब्लू कलर के टीना से छत लगा के हैं।

मैं यहा पर रेस्टोरेंट देख पा रहा हूँ।

वाइन शॉप के अंदर बहुत सारा दारू रखा है।

घर के पीछे ग्रीन ग्रास लोग भी है।

दुकान के अंदर इंसान नज़र आया है।

घर के अंदर भी रखा है टेबल भी दिखाई दिया है।

ऊपर वाला फ्लोर में जाली से कुछ जाली जाली बना के है।

रेस्टोरेंट में परदा लगाया हुआ है।

यहां पर बस के अंदर दिखाई दिया है।

नदी में बहुत ज्यादा लोग नहा रही है।

नदी के ऊपर में रास्ता के लिए सीमेंट से बनाया है।

इस रास्ता के ऊपर स्कूटी भी रखा है।